देखने से ये बैंक प्रतीत हो रहा है लग रहा है कि यह एक बैंक है जहाँ कुछ कस्टमर कुछ ग्राहक अपने जरुरतो का पैसा निकालने के लिए आए हैं।

या फिर यह किसी तरह का ऑफिस है एक कैलेंडर ।

पता है मालिक का दस बारह हजार रुपया लग ही जायेगा इसमें |

एक मकान जहाँ पे बाहर में कुछ पुराने खिड़कियाँ गाड़ी खड़ी है।

ट्वेल्फ्थ कॉमर्स का क्लास है ट्वेल्फ्थ बारहवीं का टो कॉमर्स कॉलेज कॉमर्स का क्लास है ये कॉलेज का क्लास है कॉलेज क्लास है कॉलेज का --